यह एक जिम सेंटर है।

घर के अंदर पांच व्यक्ति है।

बाईकों के पास में कुछ व्यक्ति खड़े हैं।

यह एक पत्थरों की बड़ी बड़ी दीवार है।

रिक्शा के पास में एक दुकान है।

यह एक ऑफिस है ऑफिस के अंदर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं।

कुछ व्यक्ति और महिला जा रही है।

रैक के अंदर कुछ डिब्बे रखे हैं।

दूसरी साइड ए_सी लग रखी है।

यहाँ पर एक आदमी एक काउंटर पर खड़ा है और छत के अंदर लाइट जल रही है।

यहां पर टीन सेट है जो की छत की है।

ये उनमें एक लड़की है।

यहां पर बाउंड्री के पास में कुछ पेड़ खड़े हैं।

यह एक ईजी डे है ईजी डे के अंदर काउंटर है।

कोने में कुछ पेड़ खड़े हैं।

यहां पर पांच लिखा हुआ है।

बैलून है जिनका कलर पीला और वाइट है।

यहां पर दूर दूर तक जंगल दिख रहा है।

यह एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाहर पेड़ खड़े हैं।

कुर्सी के पास में एक काउंटर है काउंटर के ऊपर कुछ सामान रखा है।

रूम अंदर बेड पड़ा है बेड के ऊपर नीले रंग की चादर बिछी हुई है।

मंदिर के अंदर कुछ व्यक्ति बैठे हैं और कुछ खड़े हैं।